इस फोटो में जो है वो एक काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दे रहा है और नीचे भी बॉक्सेस में जो है वो--

और एक क्रेट जो नीचे खाली पड़े हैं एक बाल्टी रखी हुई है साथ में।

जिन्होंने अपने हाथ में एक थाली ली हुई है उसके अंदर दिया जला रखा है।

दोनों साइड जो हैं वो विकेट लगी हुई है।

घर दिखाई दे रहा है जिस पर--